पिंक रेड ब्लैक पर्पल बहुत सारे हैं। ब्लू यहां पर छोटी-छोटी साइकलिंग-- बुक्स की दुकान है। यहां पर यू-पी-एस-सी की नोटिस मिलती है। और की बुक्स नोटबुक मिलती है। यहां पर बहुत बड़ा खंबा लगा ओ जिसमें यह नोटिस बोर्ड लगाए स्कैनर लगा हुआ है।

और अंदर बहुत सारे लोग खेलते हुवे नज़र आरहे है अंदर बहुत सारे झूले लगे हुवे है बच्चों की एक्टिविटी लगी है पीछे बहुत सारे पेड़ नज़र आरहे है लाल कलर की मिट्टी दिखरही है.

या पे एक बैंक है बैंक के बाजु में एक दूकान है और यहाँ पे बाहर दो साइकिल खड़ी नज़र आरही है.